गेट के बीचो बीच एक बड़ा सा घंटा टांगा हुआ है।

इसमें बहोत ही अच्छे से यहां पौधे को उगाया गया है।

यहां पे बहोत लोग रहते होंगे दिन साफ नजर आ रहा है।

आसमान बहोत ही साफ है और घाम लगा हुआ है।

नदी में एक छोटा सा नाव नजर आ रहा है।

यहाँ एक खाली सा कमरा हैं।

यहां पे कुल दो सेट है सोफा सेट के।

यहां पे हम यह एक बिखरा हुआ कमरा देख पा रहे हैं।

इसमें से एक दुकान खुली हुई है एक दुकान बंद है।

जिसे बांस की मेज बना के बहोत अच्छे से सजा के रखा गया है।

ये बहोत ही अच्छे से सजा के रखा गया हैं।

झील के बगल में एक पहाड़ देख पा रहे हैं।

देख के लग रहा है जैसे कि यह कोई एक--

घर खाली है वहां पे कोई भी नजर नहीं आ रहा है।

यहां पे हम एक घर देख पा रहे हैं।

मैदान के बिचो बीच उजले कलर से रंगा हुआ एक--

इसके बगल में भी कुछ कुर्सियां सजाई हुई है।

यहां पे हम एक लड़का और एक लड़की को देख पा रहे हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं।

यहां पे हम पहाड़ी गांछे भी देख पा रहे हैं।

यह कलाकारी पत्थर पे खोप के बनाया गया है।

यह कलाकारी पे हम पूरे छ चित्र देख पा रहे हैं।

यहां पे कुल छह चेयर दो टेबल है।

जो बहोत ही अच्छे से सजाके रखा हुआ है।

इनमें से सबसे ऊपर वाले खण्ड में पूजा स्थान बनाया है।

सारे खंड बहोत सारे डिब्बों से सजाया हुआ है।

इन सारे चित्रों को दीवार पे बहोत ही अच्छे से सजाया हुआ है।

यहां पे हम दो पहाड़ देख पा रहे हैं।

सीन बहुत ही साफ नजर आ रहा है।

यहां हम खाली सा मैदान देख पा रहे हैं।

देख के लग रहा है जैसे कि यह कोई एक बहोत ही बड़ा सा अपार्टमेंट या फिर घर है।

यहां पे हम एक नाई का दुकान देख पा रहे हैं।

यहां पे कई बिल्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं।

विद्यालय की दोनों बगल से सीढ़ियां ऊपर जाती हुई नजर आ रही हैं।

यहां पे हम एक कार्ड से बनाएं बक्से देख पा रहे हैं।

यहां पे बगल में दो चेयर नजर आ रहे है।

यहां पर होटल बेकुल लिखा हुआ है।

वहां से और निचे इंडियन चाइनीस कॉन्टिनेंटल लिखा हुआ है।

मदर प्लस के डीब्बे और भी कई समाने --

यहां पे हम ढेर सारे पेड़ पौधे देख पा रहे हैं।

पेड़ पौधों के बीच यहां पे हम घर देख पा रहे हैं।

नीचे पत्थर से और थोड़ा सा ऊपर शीशे लगे हुए हैं।

उसके बगल में हम देख पा रहे हैं की बहोत से चाय पत्ती के--

रास्ते पे दो गाड़ी को चलते हुए देख पा रहे हैं।

रास्ते से नीचे एक पतला सा नाला झरने जैसा दिखाई दे रहा है।

जो बहोत ही अच्छे से सजाया हुआ है।

बिल्डिंग के बगल में कुछ काट के कचरे रखे हुए हैं।

इसे बहोत ही अच्छे से सजाया हुआ हैं।

टेबल के नीचे एक डस्टबिन रखा है।

यहां पे हम एक टी टेबल और चेयर भी देख पा रहे हैं।

इस कमरे में हम चार खिड़कियां देख पा रहे--

रोड देखके लग रहा है जैसे अभी पानी परा हो।

रोड पे एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है।

यहां पे हम सिंघी और भी कई जानवर को देख पा रहे हैं।